मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज काफी सजा हुआ दिखाई दे रहा है स्टेज के दोनों कोने पर दो मोर बनी दिखाई दे रहे है पीछे लाल कलर का पर्दा लगा दिखाई दे रहा है सामने ग्रीन मैट बिछी दिखाई दे रही है।

जमीन दिखाई दे रही है कुछ दूरी पर दो बच्चे झूले में खेलते हुए दिखाई दे रहे है सामने में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है एक सीमेन्ट की पट्टी दिखाई दे रही है बड़े-बड़े शवन के फूल पेड़ --